ये बच्चों को खिलौने की दुकान दिखाई दे रही है यहां बच्चों के खिलौने--

यह एक नर्सरी की तस्वीर है।

यह एक पिकनिक स्पॉट्स है।

अभी रात का समय है और बारिश हो रही है।

बसें कहीं दूर जाने के लिए आती हैं।

पेट्रोल पंप का आउटसाइड में--

फ्री एयर और नाइट्रोजन एंड लुब्रिकेंट के--

यह एक खिलौने की दुकान है।

एक दुकान का नाम वैभव ट्रेडर्स है।

यह दृश्य किसी पुराने ब्रिज का है ब्रिज के ऊपर--

घास भी उगे हुए हैं। वृक्ष के नीचे--

कुछ योग्य की दिशा में बैठे हुए हैं।

यहां पर खाने के समान मिलते है।